ये एक बाईक शोरूम है। सुज़ु - सुजुकी का शोरूम है।

स्कूटियाँ अलग अलग तरह की हैं। एक लाल है नीली ब्लैक ग्रे वाइट अलग अलग कलर की स्कूटी रक्खी हुई है।

ये फोटो एक मंदिर की है। मंदिर सजा हुआ है। घंटा लगा हुआ है। गेट का कलर लाल है। गेट जो है। अ अ ब गेंदे के फूलो से सजा हुआ है।

कारखाना दिख रहा है जोकि काफी बड़ा है। एक अंकल जाते हुए कही दिख रहे हैं। नारंगी शर्ट पहने हुए हैं। व्हाइट धोती --

रोड में दो आदमी दिख रहे हैं। एक आदमी ने गुलाबी शर्ट पहनी है ब्लैक पैंट । एक ने व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनी है। उसके हाथ में एक थैला है।

गैलरी में एक मेम दिख रही है जिन्होंने सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई है सीटें रखी हुई है सीटे में लडकिया खड़ी हुई है जो की किसी प्रोजेक्ट बना रही है पेंटिंगस कर रही है।

एक डेयरी दिख रही है वो अनमोल डेयरी जिसपे लगा हुआ है जिसमे लिखा है अनमोल डेयरी।